दीवार पे गुब्बारे लगे हुए हैं।

इसमें पीछे पेड़ खड़े हैं।

एक पुतला हारमोनियम बजा रहा है एक पुतला ढोल बजा रहा है शीश शीशे लगे हुए हैं।

दीवाल पे भारत का नक्शा है। अ दीवार पे एल_सी_डी लगी हुई है। दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है।

छत में पंखा लगा हुआ है दीवार पर लाइट लगी है।

यह स्कूल है स्कूल में बच्चें मेज पर बैठे ड्राइंग बना रहे हैं।

कुछ आदमी खड़े हैं। कुछ आदमी कार को सही कर रे --

ये एक टीन सेट है। टीन सेट में लोहे के पाइप लगी हुए हैं।

बिना बिना पलस्तर के मकान है।

स्टूल रखा है स्टूल के ऊपर लकड़ी का झुंबर है।

यह एक कोण्टर है कोण्टर के ऊपर दो बॉक्स रखे हैं।

एक साइड में जीने की तरफ गेट लगा हुआ है।

गेट प परदे लगे हुए हैं।

यह एक पार्क है पार्क में औरतें गीत गा रही है।

शोरूम में कार खड़ी है शोरूम के बाहर कार खड़ी है।

दो टीचर है एक टीचर कुर्सी पर बैठी है एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है।

यह एक इंग्लिश सीट का शोरूम है।

मरद सामान दे रहा है इसमें।

डब्बे रखे हैं नमकीन के है।

स्टूल रखा है स्टूल के ऊपर मोबाइल रखा है।

यह एक पार्क है इसमें वो तालाब है।

पुतले ने टाउजर कुर्ती पहन रखी है।

यह एक हैं इसमें मजदूर काम कर रहे हैं कुछ मजदूर इधर उधर घूम रहे हैं।

सरिया पड़ा है बजरी पड़ी है।

जहाज केस स् जहाज के पास दो आदमी खड़े हैं।